इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें पैसे है ही नहीं।

ये जंगल में घूमने के लिए आए हैं लेकिन ये लगता है रास्ता भटक गए हैं इसलिए ये अभी इधर उधर घूम रहे हैं इनको रास्ता पता नहीं पड़ रहा कहां जाना है।